गार्डन में कॉफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

शाम की समय की ये फोटो ली हुई दिख रही है।

और ये समारोह वगैरह चल रहा है।

ओ जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं अ ये बुक शॉप की पिक्चर दिख रही है।

वह जो है इस पिक्चर में--

जहां पे स्टूडेंट वगैरह जो हैं कॉलेज के बैठे हुए हैं।

मुझे फिश नज़र आ रही हैं और ये फिश मरी हुई फ़िशिंग की दिखाई दे रही है।

और काफ़ी लोगों को यहां पर पैसे निकलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं लाइन लगा रखे हैं।

और काफ़ी इस पिंजरे में काफी मात्रा में कबूतर दिखाई दे रहे हैं और सभी कबूतर व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं।